मंदिर में कई सारे पेड़ वगेरा लगे हुए है और कई सारे लोग इस मंदिर मे पूजा करने आते हैं।

और इस पहाड़ के नीचे एक छोटी सी तलाब बना हुआ है और इस तलाब मे कई सारा पानी भरा हुआ --

लोग टहलने आते हैं और इस फूल बगिया में कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं |

ये एक घरघर के द्वारे का चित्र दिखाई दे रहा है इस घर के द्वारे एक बाउंड्री बनी हुई है और उस बाउंड्री पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति बात कर रहा है और इस व्यक्ति के अगल बगल --

कई सारे व्यक्ति वगेरह खड़े हुए हैं और एक व्यय इस व्यक्ति के पीछे कुछ हरी हरी घास वगेरह लगी हुई है।